इस तस्वीर में एक रूम नजर आ रहा है रूम में दो बेड दिख रहे है।

एक गार्डन नजर आ रहा है जिसकी पत्तियां हरी हरी दिख रही है।

बाल्टी और कैची भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में फायर ब्रिगेड की पार्किंग दिख रही है।

अंदर कई सारी ज्वेलरीज भी नजर आ रही हैं।

बहार कई सारे फूलों से दुकान सजी है।